लिनक्स पर इक्लिप्स संस्थापन के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप उबंटू और रेढ़त ऑपरेटिंग सिस्टम पर इक्लिप्स संस्थापित करना सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल के लिए हम उबंटू 1110 का उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटरनेट से जुडा होना और लिनक्स में टर्मिनल का उपयोग करने का ज्ञान
आपके पास रूट एक्सेस या सुडो की अनुमति भी होनी चाहिए
यदि आपको रूट या सुडो के बारे में पता नहीं है तो चिंता न करें
आप ट्यूटोरियल के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं
यदि आप प्रॉक्सी का उपयोग करने वाले नेटवर्क पर हो तो आपको प्रॉक्सी का एक्सेस करना ही चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
दिखाये गए कमाण्ड का उपयोग करके अब हमे उबंटू पर इक्लिप्स संस्थापित करना चाहिए
और रेढ़त पर भी ऐसा ही करने के लिए कुछ परिवर्तनो के बारे में भी सीखना आवश्यक है
अब टर्मिनल खोलें
कंट्रोल Alt और ट दबाएँ
यह उबंटू में टर्मिनल की शुरूआत करता है
यदि आप प्रॉक्सी का उपयोग करने वाले नेटवर्क पर हो तो आपको उसे टर्मिनल पर सेट करना होगा
यदि आपको पता नहीं प्रॉक्सी क्या है तो आप उपयोगित नेटवर्क पर नही हो सकते
तो आप यह स्टेप छोड़ सकते हैं
जो प्रॉक्सी का उपयोग कर रहे हैं उनको इसे निर्धारित करना होगा
यहाँ दो प्रकार की प्रॉक्सी हैं
एक के लिए यूजरनेम और पासवर्ड की आवश्यकता है जबकि दूसरे के लिए नहीं
संबंधित व्यक्ति से आप उपयोग कर रहे प्रॉक्सी के प्रकार का पता लगाएँ
टर्मिनल पर टाइप करें सुडो स्पेस हाइफेन एस लेकिन इसे प्रोम्प्ट करें पासवर्ड टाइप करें
ध्यान दें जैसे आप पासवर्ड टाइप करें यहाँ एस्टेरिस्क या अन्य सिम्बल के रूप में कोई भी फीडबैक नहीं है एंटर दबाएं
ध्यान दें कि प्रोम्प्ट सिम्बल डॉलर से हाश में बदल गया है
अब टाइप करें एक्सपोर्ट स्पेस एचटीटीपी अंडरस्कोर प्रॉक्सी इक्वल टो httptsusertspwd1024028080 इस कमाण्ड में प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन के लिए त्सुसेर यूजरनेम और टीएसपीडब्ल्यूड पासवर्ड है
कृपया अपनी जरूरत के अनुरूप इन वेल्यूस को बदलें
102402 प्रॉक्सी का होस्ट एड्रेस है और 8080 पोर्ट नंबर है
अपनी जरूरत के अनुरूप इन विवरणों को भी बदलें एंटर दबाएँ
कुछ मामलों में नेटवर्क को ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है
ऐसे मामलों में यूज़रनेम और पासवर्ड का हिस्सा रिक्त छोड़ा जा सकता है
मेरे प्रॉक्सी को ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं है मैं उन विवरणो को मिटा रहा हूँ
पूर्व कमाण्ड के लिए अप एरो दबाएं और यूज़रनेम और पासवर्ड मिटाएँ और एंटर दबाएं
ये कमाण्ड्स एचटीटीपी प्रॉक्सी सेट करता है
हमें पता है एचटीटीपीएस प्रॉक्सी कैसे सेट करते है
पूर्व कमाण्ड पर जाने लिए अप एरो दबाएं और एचटीटीपी से एचटीटीपीएस में परिवर्तन के लिए एस टाइप करें और एंटर दबाएँ
हमने सफलतापूर्वक प्रॉक्सी सेट की है
नॉर्मल प्रोम्ट पर लौटने के लिए Ctrl डी दबाएं
क्लीयर टाइप करें और स्क्रीन क्लियर करने के लिए एंटर दबाएं
अब हम इक्लिप्स संस्थापित करेंगे
टाइप करें सुडो स्पेस एपीटी हाइफेन गेट स्पेस अपडेट
यह कमांड सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर की सूची दर्शाता है एंटर दबाएं
आपके इंटरनेट की गति के अनुसार यह सॉफ्टवेयर की सूची दर्शाने में समय लेता है
ऑपरेशन पूरा हो गया है जब टर्मिनल डॉलर प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है
क्लीयर टाइप करें और स्क्रीन क्लियर करने के लिए एंटर दबाएं
टाइप करें सुडो स्पेस एपीटी हाइपेन गेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस इक्लिप्स और एंटर दबाएं
यह कमाण्ड्स सिस्टम पर इक्लिप्स सॉफ्टवेयर लाकर संस्थापित करता है
लाइन पर ध्यान दें जो दर्शाती है नीड्स टो गेट 108 एमबी
आपके सिस्टम के आधार पर यह संख्या भिन्न होगी और आपके इंटरनेट की गति के आधार पर पैकेजेस दर्शाने के लिए भिन्न समय लगेगा
य याN के प्रोम्प्ट पर य टाइप करें और एंटर दबाएं
सारे जरूरी पैकेजेस डाउनलोड किए हैं और सिस्टम में खोल दिए हैं

जब टर्मिनल डॉलर प्रोम्ट पर लौटता तब संस्थापन पूर्ण होता है
अब सत्यापित करें यदि इक्लिप्स संस्थापित हुआ है और सिस्टम पर उपलब्ध है
Alt फ़2 दबाएं डायलॉग बॉक्स में इक्लिप्स टाइप करें और एंटर दबाएं
यह इक्लिप्स एप्लिकेशन की शुरूआत करता है
यदि इक्लिप्स संस्थापित नहीं है तो यह एप्लिकेशन नहीं खोलेगा
हमें वर्कस्पेस लॉन्चर प्रॉम्प्ट
आगे बढ़ने के लिए ओक क्लिक करें
और हमें वेलकम टो इक्लिप्स पेज मिलता है
इसका अर्थ है सिस्टम पर इक्लिप्स सफलतापूर्वक संस्थापित हुआ है
डेबियन Kubuntu और जुबुंटू पर इक्लिप्स संस्थापित करने की प्रक्रिया उबंटु के समान ही है
रेढ़त पर इक्लिप्स संस्थापित करने की प्रक्रिया उबंटु के समान ही है
फर्क सिर्फ लाने और संस्थापित करने के लिए उपयोगित कमांड्स में है
सॉफ्टेवेयर की सूची लाने के लिए उपयोग करें सुडो स्पेस युम स्पेस अपडेट इक्लिप्स संस्थापित करने के लिए उपयोग करें सुडो स्पेस युम स्पेस इंस्टॉल स्पेस इक्लिप्स
फेडोरा सेंटोस और सुसेलिनक्स पर इक्लिप्स संस्थापित करने की प्रक्रिया रेढ़त के समान ही है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं
उबंटू और समान ऑपरेटिंग सिस्टम और रेढ़त और समान ऑपरेटिंग सिस्टम पर इक्लिप्स कैसे संस्थापित करना है इसे हमने देखा
इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रूप में
अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पता करें जिसमें इक्लिप्स के लिए समान संस्थापन प्रक्रिया हो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं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
धन्यवाद